यहाँ बोहोत सारे सब्जियां मिलती हैं जैसे पास ही में निम्बू और धनिया पत्ता रखी हुई है।

यहाँ पे एक चर्च है और इस चर्च में ईसाई धर्म के लोग आते हैं।

इसके आगे एक छोटी सी गार्डनिंग भी की गयी है। जहां पर कुछ फूल भी खिले हुए हैं। इसके ऊपर आसमान नीले आसमान से घिरा हुआ है।